ये चीज़े गाड़ियों की सजावट घर की सजावट मंदिर की सजावट और भी बहोत सी कामों में लगती हैं।

पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी है। यहाँ पर स्ट्रीट लाईट्स भी लगी हुई है।